कुछ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे हैं जिन का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा हे यहाँ पर कुछ बाइक दिखाई दे रही हे ओर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है और कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कई सारी नाव दिखाई दे रही हैं जिनका कलर ब्लू वाइट येलो दिखाई दे--

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों का कलर व्हाइट ग्रे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ कांच का फर्नीचर दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लैक ब्लू दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर सतेह का कलर ग्रे दिखाई दे रहा है कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं कुछ तस्वीर --

दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर यल्लो और ऑरेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारे --

फेन दिखाई दे रहा है और कुछ लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ फर्नीचर दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लेक और ग्रीन दिखाई दे रहा है।